-- पेड़ वेगेरा भी ऊपर में नीला आसमान भी दिख रहा है हरी हरी पत्तियां वगैरा भी हैं ।

तस्वीर में एक मीनार नजर आ रही हैं पुराना जमाने की घर बहोत सारे पेड़ वैगरह दिख रहे हैं।

तस्वीर में एक मैदान दिख रहा है जो की घासों से भरी हुई है पीछे पेड़ वगैरा हैं बिल्डिंगे वगैरा हैं लाइट वगैरा हैं कुछ लोग खड़े हैं।

बहुत सारे लोग पर्ची लेके खड़े हैं पूछ-ताछ करने के लिए अंदर में बिल काउंटर भी है सीलिंग फैन भी लगी हुई है।